घूमने की जगह है जो काफी खूबसूरत लग रही है इसका गेट काफी सुंदर लग रहा है ये जो की पत्थर के पत्थर की पत्थर से बना हुआ है।

यहाँ पर दोनों साइड जीने दिखाई दे रहै है एक चेयर पड़ी हुई दिखाई दे रही है सामने की साइड कुछ लोग दिखाई दे रहै है जगह के दोनो साइड बड़े-बड़े गार्डन दिखाई दे रहैे है जो काफी सुन्दर लग रहे है।

जो जिसके जिसको वो आगे मुंह से चाटता हुआ दिखाई दे रहा है काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े ये जगह काफी सुंदर है।

अ किनारे पर काफी बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक ग्रीन कलर का घर दिखाई दे रहा है।